साइड में कुछ व्हाइट कलर का।

अ अ एक ढेर सारी सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही है जो कि मिट्टी है जहां पे --

ढ़ेर सारी बोरिया रखी हुई जिसमें ढ़ेर सारे अनाज रखे हैं किसी में दाल किसी में चावल किसी में शक्कर नजर आ रही है।

ट्रे में दो कप नजर आ रहे हैं कप कॉफ़ी नजर आ रही यहाँ पे।

इसमें मम ढेर सारी लाइट्स लगी हुई जो की व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पे दो चेयर्स लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने --

यहाँ पर एक मेला नजर आ रहा है जिसमें --

बड़ा सा एयरोप्लेन भी दिखाई दे रहा है और दूर से एक पहाड़ी दिखाई दे रही है। उपर आसमाना --

विंडो नजर आ रही है कुछ हरे कुछ सफ़ेद कलर का दि --

जहाँ से दूर से दूर तक बहोत सारे घर भी नजर आ रहे हैं।

पोलीथिन नजर आ रही है जिसमे ढेर सारी पोलीथिन छोटी छोटी-दिखाई दे रही जिसके अंदर --